नीचे ग्रास लगी हुई है साइड में ढाबे टाइप का है।

उस साइड में भी लगे हुए हैं और उसके साइड में ही जे_सी_बी का काम चल रहा है।

उसके उसके रोड के साइड में ही दो दो दो बाइक वाले एक स्कूटी वाले अंकल जा रहे--

और और हन नीचे हनुमान जी की सुंदर सी मूर्ति भी है और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नीचे टाइल से --

उसके साइड में फ्रॉक कपडो वैगरों की दुकान है ।

एक जेंट्स ने पहने हैं व्हाइ ट व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ।

और पत्ते बने हुए हैं और उसके उपर माझा माझी वसुंधरा करके लिखा हुआ है उसके पीछे मैं एक पेड़ है और उसके

और उसका नंब थ थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी है --

वहाँ पर वहाँ पर एक कटा हुआ ट्री है।

यह एक फैक्ट्री है उसके ऊपर बहोत घने बादल छाये है।

उसके साइड में ही बहुत सारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हरे-हरे।

और उसके सामने मैं एक क्लासेस का एक कोचिंग क्लासेस का सेंटर है

ये डांस का स्टेज है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दुर्गाजी बनी हुई है।

उसके सामने बहुत बड़ा घर हैउसके साइड में उसके साइड में ही एक छोटासा घर है।

और नीचे बहुत बड़ा मैदान है ।